यह एक कॉफ़ी स्टॉल हे जहाँ जिसके बाहर कुछ आदमी खड़े हुए हैं ।

मानव दिख रहे है और कुछ आदमी औरतें खड़े है।

पेड़ लगे हुवे है पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है नीला आसमान नज़र आ रहा --